ये एक बैंक की पिक्चर है बैंक में एच_डी_एफ_सी बैंक है।

बैंक के बाहर दो आदमी खड़े हैं अंदर को जाने के लिए अंदर भी कोई खड़े हैं रस है बैंक के बाहर वो जो हैं वेट कर रहे हैं।

दुकान जैसे बाहर को रखी होती है वैसे दुकान है सब्जियां बहोत सारी सब्जियां रखी हु--

ये जो ये जो पिक्चर है वो झरने की पिक्चर है सामने जो है बड़ी बड़ी चट्टानें है बहोत बड़ी जो है पानी आ रहा है चट्टानी है।

जो है शोरूम बना हुआ है साइडों पे घर है बिल्डिंग बनी हुई है उसके नीचे जो है टैटू की दुकान है बहुत ही सुन्दर वाली--

ये जो है पिक्चर एक यूनिवर्सिटी की पिक्चर है। बहोत ही बड़ी ज्यादा यूनिवर्सिटी बड़ी है गाड़ी खड़ीया है।

बोहोत ही सुंदर ब्रिज बना हुआ है ऊपर पानी एकदम साफ सुथरा है।